घास उग रखी है जो ग्रीन कलर की है।

जो एक बंधी हुई है और इसके पीछे कुछ सामान ऐसे ल--